पे बड़ा सा घर है और यहाँ ऊपर बोर्ड लगा हुआ।

यहाँ बहोत बड़ा दुकान है और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है।

इधर से सीढ़ी और घर बनाए हुए--

असाम में बड़े बड़े झाड़ हैं और बीच में बड़ा सा मैदान है।

और यहां पे बहोत सारे लोगों ने जरकीने और --

और यहां पे शेर के पुतले हैं और कु--

यहाँ पे रोड पर लोहे के शीट से दुकान बनाई हुई--

का रंग दो सर रंग और--

में डालने के लिए छोटी सी बाली भी है।

पे दो बड़े बड़े चट्टान है और छोटे छोटे चट्टाने--

लोहे के पैप लगे हुए हैं वहाँ पे पानी आ रहा है।

और यहां पे बहोत खूबसूरत दिख रहा है।

और यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ी है।

पे चिप्स है और यहाँ पे --

साइकल की मशीन है और यहां पे बहोत सारे डंबल है।

नीचे बोर्ड लगा हुआ है जो शाही नीला रंग है और यहाँ पर बहुत --